और बड़ा ही शानदार यहाँ होर्डिंग है और पीछे --

और बड़ी ही सुंदर शानदार सी होटल नजर आ रही है।

कुछ लड़कियां बैठी है और ये धीरे से रंग डालते हुए रंगोली बना रही है।